सी और C Plus Plus में टॉकन्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि टॉकन्स को परिभाषित और उनका उपयोग कैसे करें
हम यह एक उदाहरण की मदद से करेंगे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
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबंटु ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1110 जीसीसी औरg कंपाइलर वर्जन 461 का उपयोग कर रहा हूँ
परिचय के साथ शुरू करते हैं
टॉकन दाता typesडेटा टाइप्स वेरिएबल्स वेरिएबल्स कांस्टेंट्स कॉन्स्टन्टऔर Identifiersआइडेन्टीफायर्स के लिए एक जेनिरिक शब्द है
अपने प्रोग्राम के साथ शुरू करते हैं
मैंने एडिटर में कोड पहले से ही टाइप किया हुआ है
इसे खोलें
ध्यान दें कि हमारा फाइलनेम टोकेंस c है
इस कार्यक्रम में हम वेरिएबल्स इनिशिलाइज करेंगे और उनकी वेल्यूज को प्रिंट करेंगे
अब मैं कोड समझाता हूँ
यह हमारी हेडर फाइल है
यह हमारा मैन फंक्शन्स है
यहाँ इंट कीवर्ड है
कंपाइलर कीवर्ड्स का अर्थ जानता है
आ एक इंटीजर वेरिएबल है
हमने इसे 2 वेल्यू दी है
इसे इनिशियलाइजेशन
इनिशिलायझेशन कहते है
यदि वेरिएबल को वेल्यू नहीं दी गयी है तो फिर इसे डिक्लेरेशन ओएफ थे वेरिएबल कहा जाता है
यहाँ ब कांस्टेंट कॉन्स्टन्ट है
हमने ब को 4 वेल्यू देकर इसे इनिशिलाइज किया
Constकीवर्ड का उपयोग रीड ओनली वेरिएबल रिडओन्ली वेरिएबल तैयार करने के लिए करते हैं
कीवर्ड्स और कॉन्स्टन्ट के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी स्लाइड्स पर जाएँ
कीवर्ड्स का निश्चित अर्थ है जिसे बदला नहीं जा सकता
कीवर्ड्स को वेरिएबल नेम्स के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है
सी में 32 कीवर्ड्स हैं
कुछ नाम ऑटो ब्रेक केस चार कॉन्स्ट डिफॉल्ट एनम एक्सटर्न आदि कॉन्स्टन्ट्स की वेल्यूस निश्चित हैं
वे प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान बदलते नहीं हैं
कॉन्स्टन्ट्स दो प्रकार के होते हैं नूमेरिक कॉन्स्टन्ट्स और केरेक्टर कॉन्स्टन्ट्स
अब अपने प्रोग्राम पर आएँ
यहाँ फ्लोट वेरिएबल सी का डेटा टाइप प्रकार है
हमने एसे 15 की वेल्यू दी है
डेटा टाइप नियमों के सेट के साथ वेल्यूज का एक सीमित सेट है
यहाँ डी एक वेरिएबल है
चार और सिंगल कोट्स बताते हैं कि हम केरेक्टर के साथ कार्य कर रहे हैं
परिणाम स्वरूप डी एक केरेक्टर वेरिएबल है जो आ वेल्यू संचित करता है
यह देखना आसान है कि इंट डबल floatऔर चार डेटा टाइप्स हैं
आ सी और डी वेरिएबल्स हैं
अब अपनी स्लाइड्स पर आएँ
हम डेटा टाइप्स और वेरिएबल के विषय में अधिक जानेंगे
इंटीजर इंटीजर डेटा टाइप के साथ शुरू करें
इसे इंट के रूप में घोषित किया गया है
यदि हम इंटीजर डेटा टाइप प्रिंट करना चाहते हैं तो हम फॉरमेट स्पेसिफायर के रूप में160 डी का उपयोग करेंगे
इसी तरह हम फ्लोटिंग प्वॉइंट नंबर्स के लिए फ्लोट और160f का उपयोग करेंगे
केरेक्टर डेटा टाइप के लिए हम चार और160c उपयोग करेंगे
और डबल डेटा टाइप के लिए हम फॉरमेट स्पेसिफायर के रूप में डबल और160lf का उपयोग करेंगे
अब हम डेटा टाइप की रेंज देखेंगे
इंटीजर डेटा टाइप की रेंज है 32768 टो 32767 फ्लोटिंग प्वॉइंट की रेंज है 34ई 38 केरिक्टर की रेंज है 128 टो 127 और डबल की रेंज है 17ई 308 वेरिएबल में संग्रहित वेल्यूज़ इस रेंज से अधिक या कम नहीं होनी चाहिए
अब हम वेरिएबल्स की ओर बढ़ते हैं
वेरिएबल एक डेटा नेम नाम है
इसका उपयोग डेटा वेल्यू संचित करने के लिए किया जा सकता है
वेल्यूज बदल सकती हैं जब प्रोग्राम रन होता है
वेरिएबल का उपयोग करने से पहले इसे घोषित करना ही चाहिए
हमें वेरिएबल्स को सार्थक नाम देने का प्रयास करना चाहिए
उदाहरण जॉन मार्क्स सुम आदि
अब अपने प्रोग्राम पर आएँ
यहाँ प्रिंटफ इस फंक्शन का आइडेंटीफायर नाम है
अपनी स्लाइड्स पर आएँ
आइडेंटीफायर्स के बारे में जानें
आइडेंटीफायर्स यूजर डिफाइंड नेम्स हैं
आइडेंटीफायर में अक्षर और अंक होते हैं
दोनों अपरकेस और लोवरकेस अक्षरों को अनुमति है
पहला केरेक्टर ऐल्फबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए
अब अपने प्रोग्राम पर आएँ
यहाँ हमने वेरिएबल्स और कॉन्स्टन्ट्स को इनिशिलाइज किया है
यहाँ हम उन्हें प्रिंट करेंगे
और यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है
अब saveसेव पर क्लिक करें
प्रोग्राम निष्पादित करें
कृपया अपने कीबोर्ड पर Ctrl Alt और ट कीज़ एक साथ दबाकर टर्मिनल खोलें
कम्पाइल करने के लिए टाइप करें जीसीसी tokensसी o टोक एंटर दबाएं
एक्सक्यूट करने के लिए टाइप करें tok आउटपुट प्रदर्शित होता है
हम देख सकते हैं कि यहाँ दशमलव बिंदुडेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास 6 वेल्यूज हैं
और यहाँ हमारे पास दो वेल्यूज हैं
अब पता करते हैं कि यह कैसे हुआ
अपने प्रोग्राम पर आएँ
यह इसलिए है क्योंकि यहां हमारे पास 2f है
यह सूचित करता है कि दशमलव बिंदुडेसिमल पॉइंट के बाद हम केवल दो वेल्यूज प्रिंट कर सकते हैं
यहाँ मुझे तीन दशमलव स्थानडेसिमल प्लेसेस के साथ आउटपुट चाहिए
1602f को1603f में बदलें
अब Saveसेव पर क्लिक करें
टर्मिनल पर आएँ
पहले की तरह कम्पाइल और निष्पादित करें
यहाँ हम दशमलव बिंदुडेसिमल पॉइंट के बाद तीन वेल्यूज देख सकते हैं
अब हम C में यही प्रोग्राम निष्पादित करेंगे
अपने प्रोग्राम पर आएँ
मैं यहाँ कुछ चीजें बदलूँगा
पहले अपने कीबोर्ड पर shiftctrls कीज़ एक साथ दबाएं
अब एक्सटेंशन cpp के साथ फ़ाइल सेव करें और सेव सेव पर क्लिक करें
आईओस्ट्रीम के रूप में हेडर फ़ाइल बदलें
अब यूजिंग स्टेटमेंट जोड़ें और सेव पर क्लिक करें
अब काउट स्टेटमेंट के साथ प्रिंटफ स्टेटमेंट बदलें
C में लाइन प्रिंट करने के लिए हम काउट फंक्शन का उपयोग करते हैं
सर्च फोर एंड रिप्लेस टेक्स्ट सर्च फॉर एंड रिप्लेस टेक्स्टऑप्शन पर क्लिक करें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
हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर एन की जरूरत नहीं है
उन्हें डिलिट करें
अब कॉमा डिलिट करें
और दो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स टाइप करें
सेवसेवपर क्लिक करें
अब क्लोजिंग ब्रैकेट डिलीट करें
दो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स पुनः टाइप करें
और डबल कोट्स में टाइप करें n अब Saveसेव पर क्लिक करें
प्रोग्राम निष्पादित करें
टर्मिनल पर जाएँ
कम्पाइल करने के लिए टाइप करें g tokensसीपीप o टोक1 यहाँ हमारे पास है टोक1 क्योंकि हम फ़ाइल tokensसी के लिए आउपुट पैरामीटर ओवरराइट करना नहीं चाहते
अब एंटर दबाएं
निष्पादित करने के लिए टाइप करें tok1 एंटर दबाएं
आउटपुट प्रदर्शित होता है
अब कुछ सामान्य एरर्स देखते हैं जो आ सकती हैं
अपने प्रोग्राम पर आएँ
मानिए कि यहाँ मैं ब को 8 वेल्यू दूँगा
सेव पर क्लिक करें
देखेंक्या होता है
अपने टर्मिनल पर जाएँ
मैं प्राम्ट क्लियर करता हूँ
अब पहले की तरह कम्पाइल करें
हम अपनी टोकेंस
सीपीप फाइल में लाइन नं 7 पर एरर देखते हैं
असाइनमेंट ओएफ रीड ओनली वेरिएबल ब अपने प्रोग्राम पर आएँ
यह इसलिए क्योंकि ब कॉन्स्टन्ट है
कॉन्स्टन्ट्स की वेल्यूज तय होती हैं
प्रोग्राम के निष्पादन के समय वे बदलती नहीं हैं
इसलिए यह एक एरर दे रहा है
एरर को फिक्स करें
इसे डिलिट करें
Saveसेव पर क्लिक करें
पुनः निष्पादित करें
अपने टर्मिनल पर जाएँ
पहले की तरह कम्पाइल करें
पहले की तरह निष्पादित करें
हाँ यह काम कर रहा है
अब हम अन्य सामान्य एरर देखेंगे
अपने प्रोग्राम पर आएँ
मानिए कि यहाँ मैं सिंगल कोट्स भूल जाता हूँ
Saveसेव पर क्लिक करें
निष्पादित करें
अपने टर्मिनल पर आएँ
पहले की तरह कम्पाइल करें
हम अपनी फाइल टोकेंस
सीपीप में लाइन नं 9 पर एरर देखते हैं
आ वास नोट डिक्लेयर्ड इन थे स्कोप
अपने प्रोग्राम पर आएँ
यह इसलिए क्योंकि सिंगल कोट्स में जो कुछ है वो केरिक्टर वेल्यू के रूप में माना जाता है
और यहाँ हमने डी को केरिक्टर वेरिएबल के रूप में घोषित किया है
एरर फिक्स करें
यहाँ लाइन नं 9 में सिंगल क्वोट्स टाइप करें
Saveसेव पर क्लिक करें
निष्पादित करें अपने टर्मिनल पर जाएँ
अब पहले की तरह कम्पाइल करें
पहले की तरह निष्पादित करें
हाँ यह काम कर रहा है
अब अपनी स्लाइड्स पर आएँ
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा डेटा टाइप उदाहरण इंट डबल फ्लोट आदि वेरिएबल्स उदाहरण इंट a2 आइडेंटीफायर्स उदाहरण printf और कॉन्स्टन्ट उदाहरण डबल कॉन्स्ट b4 एक नियत कार्य के रूप में सामान्य ब्याज की गणना करने के लिए एक सी प्रोग्राम लिखें
सुझाव सिम्पल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रते टाइम 100 इस लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें httpspoken tutorialorgWhat इस आ स्पोकेन ट्यूटोरियल
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद